यहाँ पर देख सकते है पेट्रोल पंप है ये और यहाँ पर एक ठो स्कूटी सामने खड़ा है और वह बस कुछ लोग जा रहे है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है।

आसमान भी व्हाइट - व्हाइट दिखाई दे रहा है बहुत ही काफी खूबसूरत ही दिखाई दे रहा है माहौल भी अच्छा दिखाई दे रहा हैं ।

यहाँ बहुत ही सारे लोग है लगा हुआ है काफी खूबसूरत नजारा दिखाई देरा है सामान भी बहुत खूबसूरत दिखाई देरा है बहुत ही लोग है यहाँ पर।